यहां पे एक सेमिनार हो रहा है जिसमें की बहोत सारे आदमी और महिलाएं भी हैं सामने बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

यहां भी एक बहोत बड़े होटल को दिखाया गया है जिसके सामने बहोत सारी बसे लगी है जो की काफी रंग बिरंगे है।

सामने एक गार्डन को दिखाया गया है जिसमें की बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और जमीन पे घासे भी लगी हुई है और यहां पे एक बैठने का दिखाया गया है जोकि--